भवन के सामने में बहुत अधिक मात्रा में आदमी जमावड़ा है।

इसके सामने मैं एक रोड है और रोड के बीचो बीच एक गाय खड़ी हुई है।

मुझे इस तस्वीर में दो बड़े भवन दिखाई पड़ रहे हैं एक भवन में बहुत से चमकदार शीशे लगे हुए हैं।

आसमान भी सफेद दिखाई पड़ रहा है।

बैंजो वाले लोग बैंजो ताशा पार्टी बजा रहे हैं और बहुत से आदमी काउंटर पे खड़े हैं।

दरवाजे के बाहर में एक आदमी सादा कलर का टी शर्ट पहन के खड़ा है जिसका चेहरा दिख नहीं रहा है।

और आसमान सादा कलर का है एक वृक्ष भी है।

उसमें बहुत से खड़की हैं दरवाजे हैं औ उस दिवाल पे एक बोर्ड लगा हुआ हैं भीम राव अंबेडकर पुस्तकालय।

उसके सामने में म बहुत से बाइक खड़े है उसके सामने में एक रोड है।

सामने में काउंटर है इसपे पुरस्कार वाला समान और छोटे छोटे पानी के बोतल रखे हुए हैं।

वर्दी भी पुलिस का पहना हुआ है उसके माथे पे अं अं काले कलर का टोपी है और एक लाल कलर का फूल लगा हुआ है।

उसके बगल में एक पहाड़ी जैसा हरी हरी घास उगा हुआ है एक छोटा सा घर भी है।

दुकान के अंदर काउंटर पे एक डेरी मिल्क का बॉक्स रखा हुआ है जिसमें बहुत से डेरी मिल्क रखे हैं और लगेज हैं लगेज हैं ।

काउंटर है काउंटर के अंदर बहुत से सामान है कॉस्मेटिक सामान है साबुन वगैरह रखा हुआ है लाइट जला हुआ है एक पंखा लगा हुआ है।

इसके पंख बहुत चमकीले है पीछे भाग इसका कुछ सादा है।

अ पंजाबी लोग का लोगो दीवाल पे लगा हुआ है चारों साइड हरे हरे वृक्ष हैं।

और उस गमले में बहुत से फूल पौधे लगे हुए हैं।

पलंग के पीछे में चार्जर लगा हुआ है बोर्ड है।

खिड़की में पर्दा सादा कलर का है और लाइट जला हुआ है।

यह एक कोई फास्ट फूड का दुकान है दुकान के अंदर काउंटर के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है।

एक शीशा का काउंटर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है अपना टाइम आएगा और एक बल्ब लटका हुआ--

यह एक कोई बेडरूम का फोटो है इसमें दो पलंग लगे हुए हैं।

एक पंखे लगे हुए हैं और काउंटर पे स्प्राइट और थम्सअप का दो बड़ा बोतल रखा हुआ है।